के अन्दर हमें किसी स्कूल का द्रश्य दिखाई दे रहा है बड़ा स गेट दिखाई दे रहा है कोई पास में एक और गेट दिखाई रहा है।